एक बहोत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है इस बिल्डिंग के यह एक रेलवे स्टेशन है यहाँ पर काफी सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

उम यहाँ पर एक पोस्टर दिखाई दे रहा है जो पोस्टर रेड कलर का है यहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस है जो की इसमे गेट लगे हुए हैं।